लगा हुआ चटर चैनल भी लगी हुई दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर कुछ वाय फाय झाड़ भी रखें पोस्टर में एक आदमी तस्वीर भी बनी हुई हैं।

एक झण्डा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं जो वहाँ नीचे शटर दिखाई सड़क भी लगी हुई हैं।

यहाँ पानी का तालाब दिखाई दे रहा है जिसमे नाँव डली हुई है एक ब्रिज बनाया जा रहा है उस पानी से--